और ऑफिस है ऑफिस नीचे बहुत सारा मोटर साइकिल लगा हुआ है मोटर साइकिल --

और जो है चुकीं हर-हर मोदी घर-घर मोदी कर रहा है ये सब ।